एक रूम में वाइट पर्दे लगाए हुए हैं।

इस रोड पे दो व्यक्ति चल रहे हैं।

यह सूर्य का दृश्य है सूर्य से रोशनी आ रहा है।

घर के बाहर इस्कूटी और बाइक भी लगाया हुआ है।

इस रोड के किनारे बहोत सारे ऑटो और जिप भी लगाए हुए हैं।

इस रोड के किनारे एक पोल भी लगाया हुआ है।

नदी के किनारे किनारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

इस मैदान में बहोत सारे पेड़ पौधे भी हैं।

यह एक घर का दृश्य है।

इस रोड के बगल में एक बहुत बड़ा मैदान है।

इस पेट्रोल पंप में बहोत सारी गाड़ियां खड़ी हैं।

मिर्ची के बगल में ब्लू कलर के प्लास्टिक के डब्बे में आलू भी रखा हुआ है।

इस रूम का फर्श भी व्हाइट कलर का टाइल्स है।

इस बिल्डिंग के बाहर दो पुलिस खड़े दिखाई दे रहे हैं।

यह एक दुकान का दृश्य है।

सभी अलमारी में कॉपी किताब और भी बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

इस हॉल में बहुत सारा बाइक लगाया हुआ है।

इस होटल में आग पर लोहे का जाली रखा हुआ है और उस जाली पर बहुत सारा लिट्टी पक रहा है।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

इस घर के बाहर एक बोर्ड लगाया हुआ है बोर्ड पर ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर लिखा हुआ है।

इस घर के बाहर सजावट भी किया हुआ है।

इस रूम के बाहर एक पोस्टर लगाया हुआ है उस पोस्टर पे भाई ऑटो केयर लिखा हुआ है।

में भी एक पोस्टर लगाया हुआ है।

मंदिर के बगल में और भी मंदिर बनाये हुए हैं।

इस बगीचे में बहोत सुन्दर सुंदर फूल लगाए हुए हैं।

यह एक रूम का दृश्य है इस रूम में बहोत सारे पोस्टर लगाए हुए हैं।

उस टेबल पे बहोत सारा डायरिया रखा हुआ है।

इस मॉल में बहुत सारे लाइटें लगाए हुए हैं।

पहाड़ पर पेड़ पौधे भी लगाए हुए हैं।

पहाड़ पे तीन चार व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक बिल्डिंग का दृश्य है बिल्डिंग में बहोत सारी खिड़कियां लगाई हुई हैं।

बिल्डिंग में बहोत सारे बालकनी भी हैं।

यह एक बहुत बड़े हाल का दृश्य है।

इस हॉल की दीवारें व्हाइट की कलर की पेंट की हुई हैं।

इस रूम में टेबल भी है और टेबल के नीचे ढोल भी रखा हुआ है।